व्यक्ति हैं। जिनमे से दो या तीन बाइकें है और एक स्कूटी है। उसके आगे हमें एक कार खड़ी हुई दिखती है।

पीले रंग की या ऑरेंज रंग की जिसके ऊपर ग्रामीण बैंक लिखा हुआ है।

यह तस्वीर देखकर एक मुसलमानी तस्वीर नजर आती है हम इसमें ढंग से रंग नहीं पहचान सकते बिल्डिंग का |